जिसमें जिम करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए नजर आ रहे हैं इस--

लाइट भी बर रहा है पंखा भी है।

साइकिल भी है और दुकान भी है बोरा भी रखा हुआ है।

जिसमें जिसमें टेबल और कुछ चेयर रखी हुई भी ह--

और चेयर पे व्यक्ति भी बैठे नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक होटल है जो बहुत बड़ा है।

यहां पर बोर्ड भी टांगा हुआ है जिसमें डिजिटल सेवा लिखा हुआ है।

यहां पर नारियल का पेड़ भी है।

बहुत सारा बच्चे लोग हैं और बहुत सारा बैलून भी है।

बहुत सारा खिड़कियां है और गाड़ी भी लगा हुआ है।

घर में भी पेंट किया गया है।

बहुत सारा शीशा का खिड़कियां लगा हुआ है।

साइड में बाइक भी लगा हुआ है और मूर्ति भी है।

बहुत सारा पेड़ है।

एक पेड़ का पत्ता भी दिख रहा है।

पानी टंकी भी है और पोस्टर भी लगा हुआ है।

पोस्टर भी लगा गया है।

और कुछ ईंटे भी रखे हुए नजर आ रहे हैं।

बिल्डिंग का कलर येलो कलर दिखाई दे रहा है।

पानी टैंकर भी है वहां पर।

घर भी है बहुत सारा बड़ा बड़ा बिल्डिंग --

व्हाइट व्हाइट कलर का पेंट भी किया गया है।

बहुत सारा छापा गया है।

लाल क्रीम कलर के कपड़ा पहने हुए हैं और पीछे का व्हाइट कलर के पहने हुए हैं और मोबाइल भी है।

कोने पार्दा भी दिख रहा है लाइट भी बर रहा है।

हाउस भी बनाया गया--

और बहुत सारे बिस्कुट और साबुन और लंच बॉक्स भी रखी हुई है।

बहुत सारा शर्ट है और शर्ट का कपड़ा है और दरवाजा भी है ।